रैथल गांव में स्थित मंदिर है यहां --

मणि कल्लिका घाट पर स्थित है।

एक जो जिन्‍हीं भी हमारी पार्टी वगैरह होती है --

शांत एक यहाँ एक शांत जगह होती है।

घाट के निकट पर स्थित पुल है।

यह उत्तरकाशी में स्थित --

यहाँ बस हमारे ट्रेवल के लिए भी होती हैं --

सरस्‍वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज --

मणिकर्णिका के घाट पर स्थित पुल है।

यह हिन्‍दूओं की माता माँ राजराजेश्‍वरी --